कुछ पिला है सामने एक गेट भी दिख रहा है जिसका कलर ब्लैक है।

सामने एक आदमी है दो आदमी सामने बैठे हुए हैं।

और दो गाड़ियां है दो बड़ी गाड़ियां है।

यह एक टॉय का शॉप लग रहा है जिसमें बहुत सारे टॉय रखे हुए हैं ।

यह एक हरा भरा दृश्य है।

यह एक कोई बाजार का छवि है दृश्य है।

यहां इस फोटो में हमें दो गाड़ियां दिख रही है जोकि एक स्कूटी है और एक बाइक है।

यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें की टेबल और कुर्सियां दिख--

फोटो में बहुत सारे आदमी दिख रहे है जोकि बोरा लेके अंदर जा रहा है।

उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं जो कि पूरा हरा भरा हुआ है।

यह एक कोई नदी का चित्र है जिसमें बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

पिंक कलर की है एक ग्रीन कलर की साइकल है।

इस छवि में हमें एक सामने एक मन्दिल दिख रही है।

इसमें एक खाली जगह का छवि दिख रहा है।

और कुछ टेबल दिख रहे हैं जिसमें एक आदमी बैठकर कुछ लिख रहा है।

इसमें दो खिड़कियां हैं और सामने ब्लू कलर का लिखा हुआ है फीमेल जनरल ।

ग्रॉसरी का सामान जिसमें से सामने एक ग्रीन कलर के डब्बे में कुछ रखा हुआ है ऑयल ।

यह कोई ए_टी_एम लग रहा है जिसमें से दो आदमी बाहर में खड़ा है एक आदमी अंदर को खड़ा है ।

बाहर का जो आदमी है उसका शर्ट व्हाइट और ब्लैक चेक चेक है और एक का वाइट है।

जो की सामने एक बाइक है उसका कलर काला है उसमें हीरो लिखा हुआ है।

और बहोत सारे लाइट्स लगे हुए हैं।

और यह गाड़ी भी ब्लू है।

स्टेचू का रंग पीला है इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।